विदाई है समारोह है जो भी गाड़ी भी लगी हुई है बहुत सारे लोग है और बहुत खूबसूरत --

यह एक जिम है हम्म और जिम में बहुत --

शीशा का ग्लास बना के उसमें रखा गया है।

एक दो तीन चार मंजिल कापांच मंजिल का है|